दोनों की जो है अ बीस बाईस आठ की गहराई है और ये बहोत मजबूत पिलर से दीवारें बन रही है और दुकान जो है काफी अच्छी --

लगता है की बहुत अच्छी तस्वीर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और गुड़ियों की और एल्बम वगैरह की ये तस्वीर है दुकान है जिसमें कि ये सामान वगैरह बिकता है बच्चों के खेल खिलौने गुड़ियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड़िया होती है बैटबॉल ।

वो सफेद कलर है और सफेद कलर अक्सर मस्जिदें मदरसों में देखा जाता है और हरा कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है जिससे हमें हरियाली की जो है --

ये अपने आर्ट्स का काम कर रहे हैं जिससे कुछ तस्वीर वगैरह बना रहे हैं इनके सबके हाथ में जो है फाइलें हैं और ये फाइलों में कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं काफी ज्यादा --

बहुत बड़ा है और इस चर्च के जो है काफी ऊँची बिल्डिंग है और इसका मेन एंट्रेंस शायद यही है और इसका कलर जो है --